परीक्षा शुरू होता है किसी भी क्लास का परीक्षा जब होता है दसवां से ऊपर का --

और उसके बाद और भी बहुत सारे टॉवर वाले झूला है जहाज वाले --

का मशीन है जो बहुत सारी मशीन है जिनका --

सभी सामग्री मिलता है पूजा का जैसे की --

ये डस्टबिन है जो डस्टबिन में --

कॉफी ठंडा गर्म सब कुछ मिलता है।

जिनको जो पसंद होता है वो चीज पीते है और खाते है लोग।

इधर से उधर उहा से उहा वहां से वहां जाते है।

इस ब्यूटी पार्लर को सिर्फ लेडीज --

और बड़ा-बड़ा पेड़-पौधे भी है और एक बस पड़ा भी है जहां पे --

और ये यू.पी. में है।

और इस बैंक में भी विश्वास रहता है।

ये एक पार्क है जो बोहोत बड़ा पार्क है और बोहोत ही अच्छा पार्क है और पार्क में हरा-भरा घास है और बोहोत सारे पेड़-पौधे भी हैं जो बोहोत ही बड़ा-बड़ा पेड़-पौधा भी है और बोहोत ही अच्छा लगता है पार्क पार्क घूमने में लोग आ कर बैठते है पार्क में और खम्भे भी हैं।

ये वाटर पार्क है जो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है और मोटर के माध्यम से बहुत सारे पानी का झरना ऊपर उड़ता है और देखने में बहुत ही सुन्दर बहुत ही प्यारा लगता है बहुत सारा लाइट भी लगा हुआ है और पौधे का गमला भी रखा हुआ है।